इसमें वर्जिश करने की काफी तरह की मशीनें रखी हुई हैं।

दो आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी अंब्रेला के नीचे बैठा हुआ--

पीछे वाइट कलर की लाइटें लगी हुई हैं और ऊपर सफेद कलर का आसमाना लगा--

और साइड में कुछ फाइलें रखी हुई हैं पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है और--

और उसमें पीछे हरी घास बोई हुई है उसके पीछे।

आधे मैदान में घास खड़ी हुई है आधे मैदान में मिट्टी है।

एक काउंटर बिछा हुआ है काउंटर पर एक कुर्सी बिछी हुई है।

महिंद्रा टेक्टर खड़े हुए हैं एक महिंद्रा डी_आई दो सौ पैसठ खड़ा हुआ है।

और हाथी के दांत व्हाइट कलर के बनाए हुए हैं यह हाथी मैदान में खड़ा हुआ है और उसके पीछे हरे पेड़ लगे हुए--

है और नीचे बहुत से लोग बैठे हुए हैं कुछ महात्मा लोग भी बैठे हुए हैं।

उसके अंदर झोपड़ी बनी हुई है झोपड़ी के ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा डला हुआ है पी--

ये इस दुकान पर पन्नी में नींबू रखे हुए हैं और--

और मकान पर मेहंदी कलर हुआ हुआ है और उस मकान में दो जंगले लगे हुए हैं ऊपर बाउंड्री हो रखी है।

दुकान पर जालियों की कटिंग कंप्यूटर द्वारा की जाती है।

इस वीडियो में बहुत ही सुंदर कप रखे हुए हैं।

एक कप पर लव लिखा हुआ है एक कप का डिजाइन वाइट कलर का है एक कप का डिजाइन ब्लैक कलर का है।

और इसमें एक तालाब नजर आया हुआ है।

होटल के बाहर छः सात लोग खड़े हुए हैं।

जिम कर रहा है। नीचे बहुत ही सुंदर टाइल लगी हुई है। येलो और ब्लैक कलर की टाइल लगी हुई है।

और बहुत ही सुंदर लेडीजो के चूर्ण रखे हुए ह--

और बहुत से छोटे छोटे तैरने के लिए बच्चों के नहाने के लिए टब रखें हुए हैं।

इस वीडियो में है एक बलगम जांच केंद्र है।

कुमार टी_वी हैव सेंटर लिखा हुआ है यह जनपद शामली में है इसमें पीछे एक रूम है।

इस वीडियो में अल्ट्रोज गाड़ी रख खड़ी हुई है।

इस वीडियो में यह एक नाई की दुकान है। इं --

और एक लड़की साइड में बैठी हुई है जो येलो क--

इस वीडियो में यह एक शॉप --

ये नजारा कस्मिर का नजारा है यहां पर बहोत ही--

सफेद रंग की बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ में घूमने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं।

कुछ लोग घूम रहे हैं कुछ लोग राइडिंग कर रहे हैं और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं।